यहाँ पे कुछ लोग लेने गए हैं साइकिल --

यह पे एक सौर ऊर्जा भी है।

समुंद्र यहां झील लग रहा है यहां पे जहाज है।

पवेलियन में लोग खड़े हैं।